इसके अंदर बहुत सारी दवाईयां रखी हुई है।

यह एक दीवार है जिस पर एक बैनर लगा हुआ है।

इन दोनों ने अपने सर पर हेलमेट बांधा हुआ है।

उसके हाथ में एक माइक है।

और पास में एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी खड़ी हुई है।

इसके पास बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

यह एक खेल का मैदान है जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं।

इस सड़क के सामने एक पुल है।